यहां पर एक लाल रंग का झंडा लगा हुआ है।

यहां पर दो लोग कॉफी पी रहे हैं।

यहां पर छोटे छोटे बच्चे स्कूल पढ़ने आते है।

सभी ने पीले रंग की कपड़े पहने हुए हैं।

इनका रंग काला और संतरी है।

उसके साइड में बहुत सारे कमरे बने हुए हैं।

यहां पर एक पंडित जी खड़े हैं।

जिन्होंने संतरी रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

और पीले रंग के पंजे हैं।

इसके चारों ओर बहुत सुंदर सुंदर घास है।

यहां पर बहुत सुंदर लाल रंग का पोस्टर लगा हुआ है।

दूसरी गाय भी काले और सफेद रंग की है।

यह एक बहुत बड़ा पैलेस है।

यहां पर एक सफेद रंग की कार भी खड़ी हैं।

यहां पर सभी प्रकार की किताबें मिलती है।

यहां पर बहुत सुंदर मंदर सजाया हुआ है।

यहां पर बहुत सुंदर सुंदर मेज लगे हुए हैं।

मंदर के बाहर सफेद रंग की टाइले लगी हुई है यहां पर एक काले रंग का मोटरसाइकिल भी खड़ा है।

दुकान के बाहर एक लाल रंग का डस्टबिन पड़ा है।

यहां पर चार-पांच से ज्यादा बकरियां है। बकरियां बहुत ही बड़ी है।

यहां पर बहुत बड़ा मशीने लगी हुई है यहां पर एक पीले और काले रंग का टेंपो भी खड़ा है।

यहां पर दो आदमी कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं।

यहां पे बहुत सुंदर एक पौधा पड़ा हैं।

यार यहां पर गद्दे बिछे हुए हैं।

यहां पर बहुत बड़ी एक पेड़ लगी हुई है।

यहां पर बहुत बड़ी बड़ी मेज भी पड़े हैं।